objects बनाने पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे
यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं
इस tutorial का अनुकरण के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि eclipse का उपयोग करके सामान्य class कैसे बनाएँ
यदि नहीं तो कृपया spoken tutorial पर इन विषयों पर उपलब्ध spoken tutorial देखें
हम जानते हैं कि variables और methods एक साथ मिलकर class के members बनाते हैं
class के members को access करने के लिए हमें class के लिए एक object बनाने की आवश्यकता है
अब देखते हैं कि object क्या है
object class का एक instance है
प्रत्येक object में state और behavior होता है
human being class के उदाहरण को याद करें जिसकी human पिछले tutorial में चर्चा की है
object इसके state को fields या variables में संचित करता है
यह methods के माध्यम से इसके व्यवहार को दर्शाता है
अब reference variables के बारे में सीखते हैं
हम java में 8 primitive प्राथमिक data types के बारे में जानते हैं
primitives के अलावा अन्य सभी types objects के लिए refer होते हैं
variables जो objects के लिए refer होते हैं वे reference variables होते हैं
student class पर वापस जाएँ जिसे हमने पहले tutorial में बनाया है
अब इस class से main method को हटाएँ
अब control और s कीज को एक साथ दबाकर file को सेव करें
अब उसी project में teststudent named एक और class बनाएँ
मैंने यह पहले ही बना दिया है
इस class में मेरे पास main method है
अब main method के अंदर main student class का एक object बनाऊँगा
इसके लिए main method में type करें
student space stud1 equal to new space student opening और closing brackets semicolon
इस प्रकार हमने student class का एक object बनाया है
यहाँ student class का name है जिसका object बनाना है
stud1 एक reference variable है जो student class के एक object का जिक्र करता है
और new कीवर्ड नया object बनाने के लिए स्थान बनाता है
कृपया ध्यान दें stud1 student class का object नहीं है
यह केवल बनाये गये नये object का reference रखता है
अब देखते हैं कि stud1 क्या सम्मिलित करता है
अतः अगली line type करें system dot out dot println brackets और double quotes में stud1 contains space plus stud1 और फिर semicolon
अब file teststudent dot java को सेव और now करें
हमें निम्न output प्राप्त होता है
अतः यहाँ student बनाये गये नये object के class का name है
दूसरा भाग बनाये गये नये object का memory address है
हम stud1 का उपयोग करके student class के fields और methods को access कर सकते हैं
हम इनके बारे में अगले tutorials में सीखेंगे
अब मैं student का एक अन्य object बनाऊँगा
अतः मैं type करूँगा student space stud2 equal to new space student opening और closing brackets semicolon
now type next line double अगली line type करें system dot out dot println brackets और double quotes में stud2 contains space plus stud2 और फिर semicolon
अब इस file को सेव और now करें
हम यहाँ देख सकते हैं कि stud1 और stud2 दो अलग objects का जिक्र करते हैं
अर्थात stud1 और stud2 दो अलग students का जिक्र कर रहे हैं
उनके भिन्न roll numbers और names हैं
अब हम यहाँ बदलाव कर सकते हैं
यहाँ type करें student stud2 equal to stud1
अब इस file को सेव और now करें
हम यहाँ देख सकते हैं कि stud1 और stud2 दोनों समान object का जिक्र कर रहे हैं
इसका अर्थ है कि stud1 और stud2 दोनों roll number और name के साथ समान student का जिक्र कर रहे हैं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
reference variables नये operator का उपयोग करके object बनाना
और references निर्धारित करना
स्वमूल्यांकन के लिए
testemployee named अन्य class बनाएँ
emp1 reference variable के साथ employee class का एक object बनाएँ
spoken tutorial project के बारे में अधिक जानने के लिए
इस लिंक पर उपलब्ध video देखें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
spoken tutorial project team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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं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
अब हम इस tutorial के अंत में आ गये हैं
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ
धन्यवाद